जिन्होंने वाइट कलर का टी-शर्ट और हाफ पैंट पहना है।

योगा क्लास चल रही है जो कि नीचे--

और फीमेल्स दोनों हैं जो यहां पर योगा कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए।

तीन माहले की बिल्डिंग है और एक नीचे ग्राउंड फ्लोर है जो कि टोटल चार हो गया है।

यहां पे एक पार्क है जहां पे काफी सारे गर्ल्स एंड बॉयज मिल के योगा कर रहे है।

बेच रहे हैं काफी सारी स्टेशनरी है।

और बुक अ यहां पे काफी सारी बुक लाइब्रेरी टाइप है।

यह एक मशीन है जहां पर--

कुछ किसी चीज का बैटर बनाया जा रहा है जो कि दो बंदे हैं एक अंकल ने ब्लू शर्ट नीचे ब्लैक पैंट एक इन्होंने टी-शर्ट पहनी है नीचे--

और काफी सारे जेंट्स हैं और पीछे अ एक अ भी लोग हैं जो ढो रहे हैं में समान उठा रहे हैं झाड़ है।

खिड़कियां विंडो है रेड कलर के फ्लावर है वाइट कलर के काटन्स लगे हुए हैं जिससे फूलों से सजाया गया है ऊपर व्हाइट कलर की लाइटिंग --

टेबल फैन लगा है काफी लोग चेयर पे बैठे हैं।

लोग सुन रहे हैं एक फोटो निकाल रहे हैं।

और दीवाल है फैन है यहां पर--

क्रीम कलर की ब्लू कलर का भी पेपर है --

यह एक बड़ा सा रूम है जहां पे--

ये हॉस्पिटल के फोटो है जहां पे कुछ लोग दवाइयां लेने आए एक सिस्टर बैठी है जो दवाई दे रही उनके बाजू में भी हैं एक भाई साहब खड़े है वो दवा दे रहे हैं।

एक बकरी है गॉट गार्डन में बैठी है।

उसपे अ बाजू में सब दरवाजे के बाहर एक एक पेड़ लगे हुए हैं ग्रीन कलर के पत्ते हैं।

अ बाहर पानी का नल है बाहर बकेट्स रखे हुए हैं व्हाइट कलर के।

काफी सारे ग्राहक आए हैं खरीदने के लिए फ्रॉक है बच्चों की।

यह एक बीच के किनारे का फोटो है जहाँ पर शाम हो रही है सूरज ढल रहा है काफी सारे लोग आए हैं कुछ लोग हैं समान बेच रहे हैं बच्चे हैं ब --

और काफी सारे लोग आए हैं जिन्हें दवाइयों के बारे में बताया जा रहा है काफी सारे मेडिसिन है यहां पे अंकल है जो दुकान पे बैठे--

इन्होंने वाइट कलर का स्वेटर ब्लू कलर की शर्ट पहनी एक बाहर भईया खड़े है ब्लैक कलर की--